यहां पर हॉल का दृश्य दिख रहा है।

डक बनाया हुआ है डायनासोर है।

अंदर में बेड लगाया हुआ है बेड पर बेलशीट बिछाया हुआ है वो भी ब्लू कलर का और इसमें मोटे मोटे तार लगाए हुए हैं ब्लैक कलर का।

ऊपर करकट से हुआ है करकट का कलर वाइट है।

इस पे रंग बिरंगे दृश्य दिख रहे हैं।

इसमें रैक बनाया हुआ है रैक में कई सारा फ्रेम रखा हुआ है उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है।

एक आदबीर है जो वाइट कलर का शर्ट पहना है।

और उसमें पाइप लगाया हुआ है पोल गाड़ा हुआ है।

इसमें एक स्टेज बनाया हुआ है।

और उसके बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

बहुत सारे लाइट जल रहे हैं बगल में परदा लगाया हुआ है।

यहां पर जंगल का दृश्य दिख रहा है।

एक आदमी ने जो बैग लेकर हाथ में थाली है उसके।

ऊपर में बाल्टी रखा हुआ है।

फोटो खिंचवा रहा है नीचे में बहोत सारे पत्थल का दृश्य दिख रहा है।

पानी के बीच में एक बड़ा सा पत्थर है।

उसके बगल में बड़ा बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है रोशनी आ रहा है पूरा आसमान में से और पुल पर रास्ता बनाया लोग है।

उसमें रस्सी में सब बहुत सारे कुरकुरे टांगे हुए हैं।

जैसे में बहुत सारे है सैंपू है साबुन है बर्तन धोने का।

यहां पर गाड़ी का दृश्य दिख रहा है।

चारों तरफ से घेरा हुआ है वो भी करकट से।

नीचे और बगल में घास लगाया हुआ है।

यहां पर एक गाड़ी की दृश्य दिख रहा है।

बिल्डिंग में कई सारा खिड़की लगाया हुआ है गेट लगाया हुआ है बगल में रेलिंग बनाया हुआ है छत पे जाने के लिए।

और उस पे पावर हाउस लिखा हुआ है।